यहां पर कुछ लोग टहलने जाते हैं या थोड़ी सी सेर करने जाते हैं जब वो खाना खा लेते हैं। यहाँ आस पास हमें कहीं पर भी दिख जाएगा छोटा मोटा जहां घर वागेर भी नहीं बने होते हैं।

लोग इसको बड़ी प्रशंसा पूर्वक खाते हैं। किसी-किसी लोगों का तो यह फेवरेट भी होता है और लोग इसे खाना जरूर पसंद करते हैं जरूर खाते हैं और जाते भी हैं खाने के वास्ते के लिए इसलिए --

ऐसे काव्य मूर्तियाँ हमें देखने को मिल जायेंगी ये शिल्पकार के कलाकृतियाँ होती है भारत में भी कितनी ही मूर्तियाँ बनी हुई है काफी --

जैसे कि हम देख सकते है कि यहां पे एक हलवाई की दुकान भी है। यहां पे एक मेकप की दुकान भी है। यहां पे एक बैंक भी है और हम यहां पे देख सकते है कि मार्केट भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये एक बाजार है और तीन-चार चीज़े इकट्ठी हैं।

जैसे लिखा हुआ है की ये दिल्ली जनरल स्टोर है। यह जनरल स्टोर में हमें सारी जनरल आइटम मिलेंगी जैसे कि अगर हमें वाइपर चाहिए घर का कोई सामान चाहिए।

शिल्प कला करते है ऐसी जितनी भी कला होती है कलाकृतियाँ होती है वो वो खुद बनाते है अपने हाथो से। जीतते भी शिल्पकार होते है वो भगवान की मूर्ति भी बनाते है और भगवान की मूर्ति को ऐसे ही --

ऐसा बाजार हमें देखने को मिल जाता है। सड़क ऐसी हमें भारत में देखने को मिल जाती है। भारत में ऐसी काफी सड़के हैं।

ज्यादा लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। पर कुछ लोग इसे बहोत ज्यादा पसंद करते हैं। हमें किसी भी लोकल शॉप में या बेकरी में आसानी से मिल जाएगा। हमें अगर इसे खाना हो तो हम ऑर्डर भी कर सकते हैं।

ऐसे हमें बल्ले कई काफी जगह मिल जायेंगे ये जब क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें ये इस्तेमाल होते है। आज --